पहाड़ पर बहोत अच्छे अच्छे पेड़ भी खड़े हुए हैं।

और इस पहाड़ों के बीच एक सड़क जा रही है।

इस अस्पताल के अंदर कुछ औरत और कुछ आदमी खड़े हुए हैं।

इस जोहड़ के अंदर कुछ हरी हरी घास भी खड़ी हुई है।

इस कॉलेज के बाहर बहुत सारे आदमी और कुछ औरत खड़ी हुई है।

मंदिर के चीरता लोहे की ग्रिल भी बनी हुई है।

मंदिर के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है।

और इस गेट के पास एक डॉग भी खड़ा हुआ है।

और अंदर की साइड एक आदमी खड़ा हुआ है एक आदमी बाइक से जा रहा है।

इस ग्राउंड के अंदर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

और सामने ही दीवार पर एक तिरंगा भी बना हुआ है।

उसकी बराबर में एक लोहे का जंगला भी दिखाई दे रहा है।

और दो बाइक भी खड़ी हुई हैं। एक खंभा भी खड़ा हुआ है।

और विसकी बराबर में एक मकान भी है।

के पास कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

और बराबर में एक कुर्सी भी रखी हुई है।

और सीलिंग भी बंधी हुई है और कुछ लाइटें भी लगी हुई है।

इस ऑफिस के अंदर एक काउंटर पड़ा हुआ है काउंटर के ऊपर एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

टेबल के पास कुछ कुर्सियां भी बिछी हुई है जिनके ऊपर कुछ आदमी और कुछ औरत बैठी हुई हैं। एक बच्चा भी है।

और सामने की दीवार पर कुछ शीशे भी लगे हुए हैं।

इस जाल के अंदर बहुत सारे अलग अलग कलर के मिठी तोते बैठे हुए है।

और नीचे की साइड कुछ अनाज भी रखा हुआ है।

इस ठेले के अंदर एक पानी की बोतल भी रखी हुई है।